यहाँ ये ये सभी मजदूर है। ये सभी घर का काम कर रहा है और यहाँ पर ये दो ड्रम है और दो आदमी है और बालू ईंट गिट्टी सब है।

और एक बल का रंग लाल है

वहाँ पर बहुत बड़ा किताब का दुकान दिखाई दे रहा है। और बहुत सारा आदमी किताब खरीद रहा है। और दो-तीन आदमी के पीछे मे बैग लटका हुआ है।